फेद रंग का देख रहा है और ये यहां पे--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

पेड़ वगैरह दिख रहे हैं यहां पे देख सकते हो यहां पे ये--

यहां पे ये गुब्बारे लगे हुए हैं गुब्बारे सफेद और गुलाबी रंग के हैं।